एक कपड़े की दुकान का इमेज है जहां पे बहुत बड़ा सा एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसका टॉप पे बहुत सारी साड़ी पहनी हुई अर्टिफिकल लोग खड़े हुऐ है।

अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ देखे जा सकतें हैं सामने एक खंभा दिखाई दे रहा है जिसपे लाइट की तारें लगी हुई देखी जा सकती है ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे लोगों को आते-जाते साफ तौर पे देखा जा सकता है।

यहाँ पर एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है जिसपे शुभ-लाभ का चिन्न बना हुआ है सामने सामने उसके बोनट पे रेड कलर की पट्टी मारी गई है।

ऊपर एक बड़ा सा मकान जैसा कुछ मंदिर दिखाई दे रहा है जिसे सफेद रंग से पेंट किया गया है उसके बगल में हीं एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है जिसे लाल रंग से पेंट किया गया है।

यहां पर बहुत सारी कारो को एक साथ एक लाइन मे आते हुए देखा जा सकता है यहां पे उपस्थित ज्यादातर कारे सफेद रंग की है।

यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रही है जोकि सफेद रंग का है नीचे पक्की सड़क देखी जा सकती है अगल-बगल में कुछ पेड़ वगैरा भी दिखाई दे रहें हैं उसकी दूसरी तरफ एक ऑरेंज कलर की मकान दिखाई दे रही है जिसमें कुछ खिडकियाँ वगैरा लगाई गई हैं।

ऊपर एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है जिसपे बहोत सारी लाइटें लगी हुई है ऊपर भी बहोत सारी लाइटें लगी हुई है नीचे बहोत सारे लोगों को देखा जा सकता है सामने एक कार क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है और एक टेंपो पीछे से आती हुई देखी जा सकती है।